ये चित्र एक तालाब कि है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है बाजू ही ब्रिज है और उसके ऊपर लड़का ठहरा हुआ है।

ये चित्र एक तालाब कि है और इसके अंदर बहोत से बड़ी-बड़ी नाव है।

एक जिम की है और जिम मे कई प्रकार की मशीने रखी हुई है। ऊपर बड़ी लाइट लगी हुई है और सामने एक लड़का शीशे मे देखकर तस्वीर खिच रहा है।

इस चित्र में एक बहोत सा बड़ा तालाब है और एक बहोत बड़ी नाव है नाव के अंदर बहोत सारे आदमी बैठे हुए है और ये नाव को चला रहे है।

ये चित्र एक तालाब की दिख रही रही हैं और इसके अंदर नाव हैं नाव के अंदर कई लोग बैठे हुए हैं और खुली जगह पर खड़े हुए हैं।

ये चित्र एक ए टी एम और ए टी एम की दरवाजे शीशे के है। सामने बोहोत सी बाई मोटर साइकिल है और आदमी लोग जा रहे है।

ये चित्र एक बड़े तालाब की है और इसके ऊपर एक पीछे ब्रिज बन रहा है। यहा पथर पर एक लड़का बेठा हुआ है जिसने सफेद रंग सही शर्ट और काली टोपी पहनी हुई हैं।

एक मेले की है और अंदर बोहत लोग ठहरे हुए है बाहर भी कुछ लोग ठहरे हुए है और अम्म अ देख रहे है।